तस्वीर में हमको बहुत ज्यादा मजदूर लोग दिखाई दे रहा है।

और रूम में जो लाइट जो जला के है।

सामने में जो एक अंकल जो ये डांस का फोटो खींच रहे हैं।

नीचे में जमीन है और थोड़ा कीचड़ में है।

ऊपर में ए_सी लगा के है और लाइट बल्ब ऑन करके है।

वहाँ में जो पंखा लगा के है।

और यहां में जो लंबा लंबा पाइप दिख रहा है।

और हर टेबल में जो इंसान लोग जो कुछ कर रहे हैं बैठ के।

और सामने में जो एक घर जैसा बनाके है जोकि टीना और बैंबू का बनाया हुआ है।

और बीच में जो छोटा सा टेबल है और टेबल का ऊपर में जो टॉवल रखे है।